और इ ठने नाम लिख दिए है कर पिंजरा के बंद कर दिए है जेकर लगे न बहारे नी जायेक--

ये एक प्रोग्राम कर मैनेजमेंट के लिखे लागत है और हियाँ कढ़ाई चढ़ाई है यहाँ--

प्रोग्राम होकर बाद में फोटो खिचात है एक दम मस्त दिसत है जमाय झन ला देखत हो--

अखन है के मडहा ले ले जाते है तेखर से ह नौ दिन ग्यारह दिन मां राख बे हरे के विसर्जन करबे--

ये गोटे गिरजा घर हे के गिरजा घर में लोग मन विनती प्रार्थना करे के लिए आवत है।

ये है मंदिर कर बाहर हैं कस्टमर के लोग पूजा करे का आवेन ह।